हमें यहां पर एक दुकान दिख रही है रेड कलर का पोस्टर दिख रहा है व्हाईट कलर की दीवारे दिख रही है बहुत सारी सीढ़ियां दिख रही है हमें यहां पर लोग दिख रहे हैं बाइक दिख रही है काली कलर की।

हमें यहां पर बहुत सारी मुर्तिया दिख रही है हमें यहां पर दो पोस्टर्स दिख रहे हैं दीवाले दिख रही हैं व्हाइट कलर की बल्ब दिख रहे है हमें रेड कलर का कारपेट दिख रहा है।

हमें यहां पर रेड कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है मालाएं दिखाई दे रही है जो ऑरेंज कलर की है।

हमें यहां पर एक कैमरा दिखाएं व्हाइट कलर का है हमें यहां पर एक कांच का दरवाजा दिख रहा है हमें व्हाइट कलर की दिवाले दिख रही है।

हमे हां पर बहुत लोग दिख रहे है हमे यहां पर ग्रीन कलर के ब्लू कलर के व्हाइट क पोस्टर दिख रहे है ठेले दिख रहे है हमे यहां पर गड़ियां दिख रही है.

हमे यहा पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। पोश पोस्टर हमें दिखाई दे रही है रेड कलर का व्हाइट कलर का हमें यह पर बहुत सारे लकड़िया दिख रही है।

हमें यहाँ पर रोड भी दिख रही है। दरवाजा दिख रहा है। हमें यहाँ पर काँच की बिल्डिंग भी दिख रही है और नीला आसमान दिख रहा है।

हमें यहाँ पर एक दुकान दे रही है। हमें यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई दे रही है। फ्लावरपॉट हमें दिखाई दे रहे है। पानी की टैंक हमें दिखाई दे रही है पिंक कलर की है स्टूल दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का है। लोग दिखाई दे रहे है।

एक झाडता हुआ इंसान दिख रहा है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है।

यहाँ पर कुछ मकान दिखाई दे रहा है ब्लू कलर के ग्रीन कलर के है हमें कुछ बलूंस दिखाई दे रहे है जो ब्लू कलर के व्हाइट कलर के है।